एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की होटल जैसी लग रही है नीचे एक बाउंड्री के पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो की हरे-भरे हैं।

मकान दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे गेट लगा हुआ है।

बिल्डिंग सजी हुई दिखाई दे रही है जिसमें छोटी-छोटी लाइट्स लगी हुई हैं।

ये बिल्डिंग मे पूनम गारमेंट् टैक्स रेडीमेड वस्त्रों के विक्रेता प्रोफेस प्रोफेसर गोपाल ठाकुर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।